यहाँ लाल कलर की मिट्टी भी दिखाई दे रही है आसमान का कलर सफेद दिखाई दे रहा है एक आदमी जो की बाई तरफ जा रहा है वो खाली --